बहुत से अंदर दिखाई दे रहा है गेट दिखाई दे रहा है शटर दिखाई दे रहा है फोन पे का लेबल दिखाई दे रहा है मालाए दिखाई दे रहा है शटर दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर मे हमे बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है। आसमान दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे। झेंडा लगा हुआ दिखाई दे रही बहुत से लोग दिखाई दे रहे है। लाइब्रेरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड मे।

ये किसी सब्जी मार्केट की तस्वीर दिखाई दे रही है यहा बहुत से लोग दिखाई दे रहे है।

तस्वीर मे हमे एक वॉटर पार्क की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा पहाड़ दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है दिन का समय बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है पत्ते दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हमे एक पंडाल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।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

शेर का मूर्ति बना हुआ दिखाई दे रही है स्टाचू बना हुआ दिखाई दे रही है खीडकी दिखाई दे रही है जिसमें जालीन वहा गेट लगा हुआ है कुर्सिया दिखाई दे रही ह कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है प्लास्टिक फूलस पीछे मे लाइट दिखाई दे रहा है ऊपर मे बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।